यह एक चित्र है और इस चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहा है उनसे कुछ ही दूरी पे एक महिला खड़ी हुई दिखाईं दे रही है और उसके --

इसके उपर एक सवादिस्ट भोजन रखे गए हैं यह भोजन एक दाहिभाला हैं और इसमें कई सारे अलग-अलग --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक एयरोप्लेन दिखाई दे रहा है इस एयरोप्लेन पे एयर इंडिया लिखा हुआ है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बहुत ही बडी मंदिर दिखाई दे रही है यह मंदिर की चारो ओर सिर्फ़ पहाड़ दिखाई दे रही है यह पहाड़ --

यह मूर्ति के ऊपर ॐ नमः शिवाय लिखा हुआ है और यह मूर्ति बहुत ही सुन्दर दिखाई --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहा है और यह पुरुष एक नीले रंग की शर्ट पहेने हुए है।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

ये दुकान है और इस दुकान में कई सारी वस्तुएं रखी गई हैं दुकान के बाहार भी कई सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं इस गाड़ी का रंग ऐ --

यह कार एक सरक के साईड में लगाई गई है और इस सरक के आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ और चट्टान --

सड़क पे कई सारे बोर्ड लगाए गए हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कार्यलय आयुक्त कर उतराखंड ।

कि अंदर भी कुछ खाने पाइने की वस्तु रखी गई है इश टेबल पे एक कॉफी भी रखा गया --

एक ग्लास में रखी गई है इसका नाम निस --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

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ के ऊपर बादल छा --